अगल बगल से दो रास्ते हैं अंदर को गये।

एक सामने आदमी बैठा हुआ है व्हाइट शर्ट पहने।

और जमीन इसकी कच्ची है।

कैलेंडर रखा हुआ है रेड कलर का।

जमीन पे इसके हरी हरी घास है।

सामने एक लोहे का गेट लगा है फिरोजी कलर का--

एक व्हाइट कलर का बैनर लगा हुआ है।

और एक पत्थर बना हुआ है रेड कलर का।

उस पे एक ग्रीन कलर की टंकी रखी हुई है।

और एक रेली लगी हुई है लोहे की लाल कलर की।

और कुछ खंभे लगे हैं छोटे छोटे।

एक वाइट कलर कि कार है।

एक झोला रखा हुआ है पानी में।

तार टंगा हुआ है ढेर सारा--

इसमें ढ़ेर सारे काउंटर रखे हुए हैं शीशे के।

और कुछ पर्चे लगे हुए हैं रेड और पीले कलर के।

नीचे एक झोपड़ी बनी हुई है।

और कुछ अलमारियां बनी हुई हैं।

उसपे एक लाइट जल रही है।

सामने कुछ लोहे के रॉड रखे हुए है।

ऊपर पूल बना हुआ है।

ऊपर ढेर सारे बलून लगे हुए है रंग बिरंगी।

एक रेड कलर का सोफा लगा है।

छत पे दो लाइटे लगी हुई है।

जिसमें दो रॉड लगे हुए हैं लोहे के व्हाइट कलर के।

एक बड़ी से बिल्डिंग है पीले कलर की।

और कुछ ढेर सारे फूल लगे हुए हैं पीले ऑरेंज कलर के--

उसमे एक रेड कलर की सीढ़ी लगी हुई है।

और एक फिरोजी कलर का लोहे का बोर्ड लगा हुआ है।

एक बड़ा सा टावर दिख रहा है।

कुछ बच्चों के खेलने वाले--

कुर्सी रखी हुई है प्लास्टिक की।

और कुछ खंभे लगे हुए हैं लोहे के--

सामने एक बड़ा सा मॉल बना हुआ है।

सामने एक जहाज खड़ा हुआ है।

सामने ढेर सारा पानी है।

और उसमें कुछ काई लगी हुई है।

पंखा लगा है व्हाइट कलर का और कुछ लाइटे लगी हुई हैं।